सर है प्रैक्टिकल चल रहा है और स्टूडेंट काफी सब देख रहे हैं की प्रैक्टिकल किस तरीके से चल रहा है प्रैक्टिकल को करने कर रहे हैं।

लाइटे भी लगी कांच भी लगा हुआ है एक टायर की तरफ का कांच निकला हुआ है और एक खम्भा लगा खम्भा है सामने दो खम्भे लगे हुए है लोहे के।

एक होटल है होटल जहाँ यात्रीगण को रुकने की उत्तम व्यवस्था होती है।

यहाँ भारत पैट्रोलियम है भारत पेट्रोलियम इसमें डीजल और पेट्रोल भरा होता है।